यह मोर बहोत सुंदर लग रहा है।

जिसमें बहोत सारे फोटोस है।

जो बहोत सुंदर लग रहा है।

जो बहोत सुंदर लग रहा है।